जाती हमको बहुत बड़ी दिक् रही हे जाती की हमको गाड़ी बी दिक् रही हे नीले कलर की दिक् रही हे हाथ निकले हेउ ये हे जिसके अंदर पौदे बी दिखा रक् हे पेड़ो को ऐसा सन्देश देती हे पीछे हम --

जैसा की हम देख सकते है सामने में हमको एक हॉल दिख रहा है। हॉल के अंदर एक आदमी दिख रहा है। आदमी के दो पैर दिख रहे है जिसका एक पैर हवा में और पाव निचे दिख रहा है पैरो पर पट्टी लगी हुई दिख रही है।

जेसा की हम देख सकते हे सामने हमको एक कार दिख रही हे कार हमको आउट साइड से जंजीरोंसे बंधी हुई दिख रही हे कार बहोत ही घटिया दिख रही हे ब्लैक एंड व्हाइट ही कार दिख रही हे जिसका --

छत दिख रही है शाडे जो की तीन शाडे छाव में बैठने केलए बनाया हुआ हे पीछे पेड़ बी दिकरः हे जो बड़े बड़े लेकिन बहुत बहुतही बढ़िया बहुति सुन्दर --

जेकरा की हम देख सकते है सामने हुमको सुन्दर नजरा दिख रहा ही बहुतही नजर दिखा रहा हे हम को सामने एक लड़का दीक्रहा हेजो बी प्रेस में काम करते दिक् रहा हे प्रिंटिंग प्रेस दिक् रहा हे --

उसपे पीले अक्षर में सफ़ेद अक्षर में नाम लिखा हुआ हे साइड में आय_सी_आय_सी_आय बैंक दिखाई दे रही हे बिच में इन्शुरन्स ऑफिस दिख रहा हे आय_सी_आय_सी_आय बैंक नीले कलर का नही बल्कि ऑरेंज कलर का बोर्ड दिख रहा हे |